पीले कलर का और बाजू में पानी आया है बहोत सारा पानी दिख रहा है घांस है फिर--

और कुछ सीट्स रखे हैं सीट के बाजू में देख सकते हो की बहोत सारे जूते के डब्बे लगे--

बहुत सारा पानी दिख रहा है और आसमान खुला हुआ है सामने देखोगी तो बहुत सारा--

बोट में पानी गिरा हुआ डला है उसके सामने त देखेंगे एक पेड़ है।

एक खेत है खेत में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

देख सकते हो कि एक फोटोस में एक बिल्डिंग है जो आधी अधूरी बनी हुई है।

ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पेहना है कई सारे व्यक्ति पीछे कुर्सी में बैठे हुए हैं और गुलाबी कलर की गिफ्ट बांट रहे।

एक सोसायटी है और एक बिल्डिग है सोसायटी के नीचे--

एक बो एक रास्ता गई है। उसमें देख सकते है की एक पार्किंग है।

एक होटल है एक टेबील में दो बिरयानी रखी है चम्मच दो हैं और एक दो प्लेट खाली हैं एक कोका कोला की बॉटल है और एक--

दो बच्चे और मास्क पेहने हैं दो लड़कियां कुछ लिख रही है एक लड़की कागज को फार रही है एक लड़का ड्राइंग कर रहा--

नीचे एक गाड़ी रिपेयरिंग की शॉप है शॉप टायर शोपी उसके सामने एक ऑटो खड़ी है।

एक रेलवे स्टेशन है बाजू में दो पटरियां है और सामने स्टेशन है बाजू में लिखोगे तो एक पीले कलर की एक ट्रेन आ रही--

एक एक शॉप है मोबाइल की इसमें लिखा है वीवो और विराट कोहली की फोटो लगी है नीचे देखोग़े की जीरो फाइनेंस में लिखा जाता बेचा जाता है मोबाइल एक मोबाइल की शॉप में एक लड़का खरा है।